सीलिंग फैन लगाया गया है एल_इ_डी लाइट है बहोत सारे पोस्टर लगाए गए हैं उन पोस्टर पर कुछ पिक्चर से हैं।

एक बहोत सारे पेड़ है बड़े बड़े गमलेश है बहोत सारे लड़के हैं जो खेल रहे--

एक रूम टाइप का दिखाया गया है उस रूम पर डेकोरेट टाइप्स का किया गया जिस पर कॉफे--

अ बॉटल रखे गए हैं कुछ सामाने है और इधर और भी पोस्टर है।

वेंटिलेटर है पर्दा है उम् पर्दा है एक मिरर टाइप का जिस पर एक लड़का खड़ा होकर के उम फोटो वोटो क्लिक कर तौलिया है।

एक आदमी खड़ा है और दो बच्चे हैं जो बा पानी पर कुछ कर रहे हैं और कुछ पोस्टर टे--

एक मन्दिर टाइप का दिखाया गया है जिस पर बहोत सारे पानी वानी बह रहे हैं बड़े बड़े चट्टान है बड़े बड़े पेड़ पौधे है।

लगाए गए हैं तालीस है और उस पर एक कुछ दीवार पर लिखा गया है एक पोल टाइप का है जिस पर लाइट है दरवाजे हैं लो--

मट्टी टाईप का बनाया गया है छोटे-छोटे घास है पत्ते है सूखे बड़े-बड़े ब्रिक्च है कुछ घाछ है जो सूख चुके है।

गेट दिखाया जा रहा है एक ल आदमी है जो हाथ में मशीन लिए हुए हैं एक ऐसी खड़ा है नीचे माटी का रास्ता टाइप का दिख रहा है।

स्कूल दिखाया गया है स्कूल के पीछे का सीन दिखाया गया है पीछे का बैक साइड --

उम् फराया जाता है कुछ बड़े बड़े ब्रिक्ष दिखाए गए हैं कार वार दिखाए गए हैं एक बरगद का पेड़ दिखाया गया है जिसपर धागा बांधा गया--